और ग्राउंड में कुछ अ खट्टीए डले हुए हैं।

यहां पर सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां हैं।

यह ऑरेंज कलर के फूल गेंदे के फूल्स है।

खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और जींस पहनी है।

घर है और घर में अं बहोत सारे पेड़-पौधे --

लगे हुए हैं और लोहे का बड़ा सा गेट है जो ऑरेंज कलर से कलर किया--